और यहां पर कुर्सी भी रखी हुई है एक दो स्कूल रखे हुए हैं।

यहां पर शीशे की बनी खिड़कियां हैं।

और यहां एक टेल बिछी हुई है।

और यहां पर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं और यहां पर खंबे लगे हुए हैं उनपर लाइट लगी हुई है।

यह एक स्कूल का बोर्ड है इस पर तीन बच्चे उतर रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा कॉलेज है कॉलेज में चार आदमी खड़े हुए हैं।

यह एक कपड़ों की दुकान है जिसके अंदर दो पंखे लगे हुए है।

जो कि व्हाइट कलर की है और यहां पर पास में ही एक गाड़ी जा रही खड़ी हुई है।

इस कार के अंदर परदे हुए लगे हैं और बाहर की साइड शीशे लगे हुए हैं।